पीछे शादी का अरेंजमेंट हुआ है बगल में बहुत सारी व्हाइट कलर की कुर्सियां दिख रही है।

बगल में गेंदा का फूल लटकाया हुआ है।

हाथ में बहुत सारे पत्थर रखे हुए हैं जो हमें स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं।

जोकि बाल्टीयों का कलर बहुत ही अलग अलग का है जैसे कि ब्लू और ग्रीन नजर आ रहा है।

पास में बहुत सारा गेंदा का फूल लटकाया हुआ है।

पास में बहोत सारी फ्रिज कूलर ये सब रखी हुई है।

नीचे छोटे छोटे हरे भरे छोटे मोटे घास दिख रहे हैं।

एक ने टी शर्ट पहना हुआ और एक व्यक्ति ने शर्ट पहना हुआ है।

उसके बगल में एक बोर्ड नजर आ रहा है जिसमें प्लक खोसा हुआ है।

पास में एक महिला है जो कि वाइट कलर की साड़ी पहनी हुई है।

देख सकते हैं कि सामने चित्र से नजर आ रहा है कि सामने एक व्यक्ति है जो कि ग्रीन कलर का शर्ट और हाफ पैंट पहना हुआ है।

आसपास बहोत सारे पत्थर नजर आ रहे हैं।

देख सकते हैं कि सामने एक शादी का माहौल है जहां पर सभी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं जहां पे बहोत सारे डी_जे रखे गए हैं।

आसपास बहोत सारी झाडुए रखी गई है।

साथ में एक गूगल पेय का स्कैनर रखा हुआ है।

स्कूटी जो कि ब्लैक कलर की है पैशन प्रो जोकि ब्लैक कलर के है और स्प्लेंडर जो भी ब्लैक कलर के है।

साथ में बहुत सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगाए गए हैं जो कि मट्टी में नज़र आ रहे हैं।

जोकि व्हाइट कलर का नजर आ रहा है पास में ब्लू कलर का घर नजर आ रहा है।

जिस का कलर अलग अलग है जैसे पिंक है तो ब्लू है तो ब्लैक है।

इसमें बहोत सारे रैक बनाए गए हैं रखने के लिए।

और बहुत जगह पर नजर आ रही है कि व्हाइट व्हाइट कलर का घर बनाया गया--

उसके बगल मे एक सी_पी_यू रखा हुआ हैं उसके आस पास बहोत सारी कीबोर्ड रखी गई हैं।

सामने खड़ा व्यक्ति जोकि टीचर है जो आकृति में कुछ अपने स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है।

इसके सामने बहुत सारे ग्लास रखी गई है जोकि वाइट कलर की हैं।

देख सकते हैं कि सामने बहुत सारी बाइक लगाई हुई है जिसमें बहु सारी लूना बाइक लगाई हुई है।

स्कूल के ऊपर बहुत सारे कपड़े टंगे हुए हैं जो की अलग अलग कलर के हैं।

आसपास बहुत सारे घर नजर आ रहे हैं जिसमें से कुछ घर व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं।